मेकअप स्टूडियो की है इमेज इसमें काँच लगी हैं दोनों साइड काँच में जो बाउंड्री बनी है --

एक एक दो छोटी-छोटी है एक ज्यादा बड़ी है बिल्डिंग के बाहर बनी है ट्री भी नज़र आ रहा है फाउंटेन का कलर बिलु है।

लोहे लोहा भी रखा है दो मजदूर खड़े है एक मजदूर ब्लू कैप लगाए है और एक व्हाइट कैप लगाए।

एक पार्लर का हैं एक है ब्लूशाइंगटोन लिखा है जहां ब्राइडल मेक-अप हेयरस्टाइल आई मेक-अप सब की हेडिंग डली है सब होता है और एक सोफा रखा है एक टेबल रखी है उसपे फूलदान रखा है।

बहुत सारे कबाड़ है इसके अंदर बहुत सारी बुक्स रखी है बहुत सारे लोग बैठे है कुछ पेपर पढ़ रहे है कु --